इस इमेज में हमें एक शॉप दिखाई दे रही है वहाँ पे बहुत सा कलेक्शन लगा हुआ है | यहाँ पर ब्लैक कलर का फनीचर रखा है यहाँ पे दिवलो पर वाइट कलर का पेंट किया है नीचे का फ्लोर भी वाइट कलर से पेंट किया गया है।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

बाउंड्री वॉल को व्हाइट और ब्लैक कलर से पेंट किया गया है यहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है जो की ऑरेंज कलर का है यहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए --

इस इमेज में हमें ट्रेन दिखाई दे रही है ट्रेन रेड कलर की है यहाँ पे और टीन शेड दिखाई दे रहा है जो ब्लू और वाइट कलर का --